कही पे हम --

क्रीम पावडर और कई चीज़े हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पे लाइन भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

करने का काम क्रर रहे है और बगल में और एक बिल्डिंग बनाने का कार्य हो रहा है।

हम्म चाहने सभी समान देते हैं और यहां पे एक आदमी खुर्शी पे बैठा हुआ भी नजर आ रहा --

ए बन के कम्पलीट नहीं हुआ है। यह एक बहुत ही बड़ी फिल्ड में इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है।

जैसा कि आप देख सकते है इस --